ऊपर में फैन भी लगा हुआ है और बहुत सारा बल्ब बल्ब भी लगाए है जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

एक नीचे में एक पलंग भी बिछाया गया है जो आदमी सोता है।

यहां जिम में बहुत वगैरा अच्छा से बैलून भी लगाए हैं।

इस सबको बॉडी भी बना है बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है।

एक ये आदमी है जो ब्लैक कलर का जैकेट पहने है।

बाई बाई मतलब बल्ब भी लगाए हुए हैं बहुत अच्छा खरे व्हाइट कलर का बल्ब भी लगाए हैं।

यहां एगो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

मे एक बच्चा माक्स पहने है।

लाल का पेंट भी किए गए हैं जो कुछ बनाए हैं।

बहुत छोटे पेड़ पौधे भी हैं और घास भी है।

एक दुकान है इस दुकान में बहुत सारा चिप्स वगैरा दिखाई दे रहा है।

इसका बाद यहां एक पीले रंग की कोई बहुत सारा।

होटल है इस होटल में नीचे में व्हाइट कलर का टाइल्स बिछाए है।

पूल बहोत लंबा भी है और बहुत सारा भी है।

बहुत सारा शर्ट भी हैं जो में भर आए हैं और सारी भी हैं।

बहुत सारा घर भी है और यहां एक पानी भी दिखाई दे रहा है वहां--

बहुत पेड़ पौधे भी हैं छोटे छोटे और गाछ भी है बड़े बड़े।

इस भी इस ऊपर में भी बहुत सारे गान्छ भी पेड़ पौधे छोते छोते और बहुत अच्छे से सिंधुरा रंग दिखाई दे रहा है आसमान में एकदम सादा कलर का --

पानी है जो पानी ब बहते हुए--

भी लगाया हुआ है और बैलून भी सजाया गया है बहुत सारा।

यहा बहुत सारे लोग है जो लोग व्हाइट कलर जैसा पहने है ओ एक कोई आदमी कोपी लेके--

बल भी लगाए गए हैं और कुर्सी भी एक है।

पीछे में ब्लैक कलर का पर्दे हैं और नीचे में भी ब्लैक कलर कुछ है जो बिछाया है।

व्हाइट पेपर में कुछ लिख कर उसमें चिपका दिए हैं।

हॉल में बल्ब भी लगाए हैं और दीवाल मे ये दुगो लगाए हैं बल्ब ।

चार चक्का को साबुन दे के नीरमा और साबुन पूरी देख रखी है जो धोने वाले हैं।

काफी अच्छा से सजाये हुए हैं।

यहां बहुत घर भी है।

यहाँ बहुत सारी बच्ची भी हैं।

एक व्हाइट कलर एक पहनी है बच्ची जो पूरा ड्रेस व्हाइट कलर का उसका है।